यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दिवार का कलर व्हाइट है और यहाँ पे बहुत सारी रिक्शे भी दिखाई दे रहें --

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है औ नीचे जमीन दिखाई दे रही फिर कुछ झोपडीयां भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और चदर शेड दिखाई दे रहा है और यहां पे रोड भी बना हुआ है और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।